एक छोटा सा कमरा है कमरे में बोहोत से फेने लगीं हैं ऊपर लाइटें लगी हैं एल.ई.डी. बोहोत सी लाइटें लगी हैं अगल बगल कुछ काउंटरे बनी है कांचो की उनमें बोहोत सामाने रखी है।